यह एक डॉक्टर का क्लिनिक है यहां पर मरीजों की लिए हर प्रकार के सामान उपलब्ध है यहां पर डॉक्टर --

यह शहर के बीचों बीच बनया गया है एक यह बहोत बड़ा है तथा इसमे हरी भारी घास उगाई गई है बच्चे बहोत कुशलता से खेल रहे हैं।

यहाँ पर बहुत ही ऊँची-ऊँची पहाड़ियों पर एक बहुत ही अच्छे-अच्छे वृक्ष लगाए गए हैं यह पर सभी प्रकार के वृक्ष छोटे तथा बड़े सभी हैं यहां पर छायेदार वृक्ष से लेकर फलदार वृक्ष --

इस मे अभी कार्य प्रारंभ चल रहा है यह रोड बनने के बाद और भी अच्छा लगेगा।

अरुण मोटर बाइक वर्कशॉप अरुण ऑटो स्पेयर पार्ट्स आदि भी है यहाँ पर हर प्रकार का ऑटो पार्ट्स हैं यहाँ पर हर प्रकार का गाड़ियां का सुधारा जाता है।

उचित दामों पर उपलब्ध हैं इसका नाम वी.एम्. मेडिकल है इस यहां पर हर प्रकार की दवाएं आपको मिलेंगी इस मेडिकल में हर तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं।

इदर आकर लोग वर्जिश करते हैं तथा व्यायाम कर अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं बहौत अच्छी व्यायाम शाला है।